कंडे जल जलती हुई दिखाई दे रही है रेलिंग स्टील की दिखाई दे रही है पर्दे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

जैसा कि देख पा रहे है एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान सब्जी की दिखाई दे रही है उस दुकान में टेबल रखे दिखाई दे रही है टेबल पर सब्जियां रखी दिखाई दे रही है।

टू व्हीलर भी दिखाई दे रहा है ऑटो भी दिखाई दे रहा है कार भी दिखाई दे रहा है स्कूटी भी दिखाई दे रहा है और--